इसके ठीक सामने बहुत सारे बॉक्स लगे हुए हैं इसके ठीक दाएं ओर--

काउंटर के ऊपर का हिस्सा ब्लैक है जब के नीचे का हिस्सा सफेद है।

यह एक काउंटर की तस्वीर है जिसमें एक कस्टमर दुकानदार नजर आ रहा है।

गेट हल्का खुला हुआ है।

इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं गमले पर।

यहां बहुत सारी महिलाए नृत्य करते हुए नजर आ रही है।

ऊपर बहोत सारी ट्यूबलाइटे लगी हुई है और ऊपर का रंग सफेद रंग से पेंट किया गया है नीचे फर्श बिल्कुल साफ है।

नीचे एक कार्पेट बिछाया गया हैं जिसका रंग ग्रीन है।

उसके बाहर कुछ लिखा भी हुआ है जो कि बंगाली लैंग्वेज में है।

अंदर मो कुछ बोतल भी है।

पर दो टिशू पेपर भी रखे हुए हैं।

अंदर बहोत सारे सामाने टंगी हुई है चिप्स के पैकेट सोयाबीन के पैकेट नजर आ रही है।

अंदर एक दुकानदार है बाहर बहोत सारे कस्टमर लगे हुए हैं जिसमें से कुछ पुरुष कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे हैं।

यहां कुछ मोटरसाइकिलें भी है तो कुछ कार --

चेक बड़ी से बिल्डिंग है जिस पर सफेद रंग से पेंट किया गया है।

इसका ऊपर का हिस्सा यानी की शर्ट हल्का ग्रीन नजर आ रहा है जबकि पेंट हाफ है और ब्लू रंग की है।

दोनो ओर छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

घर के ठीक सामने एक बड़ी सी पेड़ लगायी गई है।

इसमें से कुछ बैलून पिंक है तो कुछ सफेद।

बहोत दूर पर बहोत सारे पहाड़ दो दिख रहे वह चट्टान से बनी हुई है बिल्डिंग --

यह एक साइकिल का स्टोर है जिसके बाहर एक पोस्टर लगी हुई हैं उस पर लिखा हुआ है भारटिया साइकिल स्टोर ।

यहां ऊपर उठने के लिए सीढ़ियां भी दिखाई दे रही है।

पोस्टर पर फ्री रुलर हेल्थ कैंप लिखा हुआ है।

जिसमें बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने नजर आ रही है।

उसे पर अभी फिलहाल प्लास्टर नहीं किया गया है।

बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे जल टंकियां हैं।

पीछे आसमान हल्का बादल है नहीं तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।

बहुत सारी छोटे छोटे घास है मैदान पर।

सामने भगवान के बुद्ध की मूर्ति नजर आ रही है जिस पर गोल्डेन रंग से पेंट किया गया है।

अंदर एक सफेद रंग की लाइट भी है।

सामने एक दरवाजा है दरवाजा खुला हुआ है।